यहां पर बहुत सारे इंजीनियर खड़े हैं।

यहां पर एक टीचर्स भी खड़ी हुई हैं।

बहुत सारे पेन और कॉपी दिख रहे हैं।